और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है एटीन सेवेंटी विथ अ डैश ऑफ़ हिस्ट्री जहाँ पे एक कॉफी मग का पिक्चर भी है।

बेंच का रंग जो है वो है कुछ और कुछ ऑरेंज और कुछ नीचे जो एक अअ वो ओ रॉक के जैसा है उसपे बेंच के ऊपर वो तो लाल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कोई नहीं है।

यहाँ पर एक अ एक टीचर कुछ लिख रहा है बोर्ड पे और दूसरे सब अ देख के अपने बुक में कॉपी कर रहे हैं ए --

ये कोई ऑफिस लग रहा है और ऑफिस में बहोत सारा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं सब क्यूंकि सब तरफ पेपर ही पेपर है।

यह एक फूल का मार्केट लग रहा है फूलों का मार्केट यहाँ पर बोहोत प्रकार के फूल हैं।

अ इधर अ कुछ क्राफ्ट वर्क किए हैं और ओ कुछ पीसेस कट कर के जो एनिमल्स ऐसे वैसे शेप्स कर के --